बिल्डिंग हे अब का बिल्डिंग नहीं जानो हो ना मैं लाइट लगी से आ पूरा सा लोग मन नीचे खड़ा है ढ़ेरें अकन भीड़ है गाड़ी है ऑटो हैं ।

बुलेरो है और का है ।

में का है समझे नहीं आता है पानी दिखत है।

तार दिखाते लाइट वाला कर बगल में कर घर बना थे ऊपर में छड़ मन निकली से है।

अब नई समझ आत हे ऊपर में आसमान हे।

रेलवे स्टेशन का तो नहीं हो फोटो लेकिन मैदान दिखाते --

यह कोई धाम का फोटो तो लागत है चुनरी-उनरी सब मुँह बांधिन है पेड़ है पेड़े है जो की --

जैसे हिंदू मन मंदिर में जाते पूजा करें यहां कुर्सी रखी नहीं है बैठे हुआ औरतरी चटाई बिछायाधीन है दोनों पार का दरवाजा खुला है।